क्योंकि यहाँ पे माता रानी के भुजा निकली हुई है।

ये नदी है जो की काफ़ी बड़ी-चौड़ी सी नदी है आप देख सकते हैं इस नदी के बीचों-बीच ये बोट है।

चेयर वगैरा झूले वगैरा जो की यहाँ पर लगाए गए है।

इ देखिये इ जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है --

इसके ऊपर एक टंकी रखी हुई है और सामने जो ग्राउंड है इस ग्राउंड मे घास वगेरा लगी हुई है ।

इस बैंक के बाहर आपको एक दो आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

की यहाँ इसपे काफ़ी सुन्दर-सुन्दर पेंटिंग बना के रखीं हुईं यहाँ देख --

नीचे इसमें मां दुर्गा की मूर्ति विराजमान है और ऊपर यहां पे गणेश जी की मूर्ति विराजमान है।

हेल्लो दोस्तों जैसा की आप देख सकते है आपको ये तस्वीर नजर नजर आ रही है जो --

ई जो लड़कियाँ लोग हैं जो की यहाँ पे डांस कर रहीं हैं आप देख सकते हैं।

ये जो शॉप है जो कि सड़क किनारे शॉप --

यहाँ पे ये मछली बाजार है आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग मछली बेचते हैं ये देखिये ये मछली बेच रहा है यहाँ पे।

ये जो खेती की गयी है । ये देखिये यह इसमें खेती की गयी है । यहाँ पे ये पत्ते-पत्ते नजर आ रहे हैं | नि --